इसपे बच्चा चढ़ा हुआ है। बहुत अच्छा माटी का बना हुआ है |

यहाँ नीचे भी एथी लगा है संगमरमर के जैसे नीचे का है।

लगा हुआ है कहीं वो किसी का कोई हाथ मिला रहा है लेडीज एडीस एक कैमरा भी लगा हुआ है।